सड़क के एक किनारे पे काफी सारे बिजली के खम्बे लगे हुई दिखाई दे रहे है।

बहुत सारे घने-घने पेड़ देखने के लिए मिल रहे है यह पेड़ पानी के अंदर ही दिखाई दे रहे है।

जो कि झरने की तरह नीचे की ओर गिर रहा है।

यह सफ़ेद-सफ़ेद पानी दिखाई दे रहा है।

जैसा की में देख पा रही हूँ।

जैसा की मै देख पा रही हूँ--

तीन तरह के आइसक्रीम रखे हुए है एक मेंगो है एक चॉकलेट है।

एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम दिखाई दे रही है।

यहाँ सड़क के किनारे कुछ गाड़िया खड़ी हुई दिखाई दे रहे है।

यहाँ आसमान बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रहा है।

तथा यहाँ पर कुर्सी पर काफी सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है।

आस - पास काफी सारे पेड़ - पौधे दिखाई दे रहे है।

जैसा की मै देख पा रही हूँ।

है इसकी मदद से ये लोग कुछ न कुछ छोटी-छोटी चीजें बनाते हुए दिखाई दे रहे है।

आसमान बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रहा है।

यह सामने दीवार के पास एक भगवन जी की फोटो रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ।

यह दरवाजा लोहे का धातु का बना हुआ है।

यहाँ आसमान में धुन्दला पन दिखाई दे रहा है।

जैसा की में देख पा रही हूँ।

तथा यहाँ पर काफी सारे बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

यह बहुत ही सुन्दर एक नदी दिखाई दे रही है।